यहाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करा गया है यहाँ एक सिंघासन व सीट सा एक सा रखा गया है शादी के लिए वह सीट सा रखा गया है ना सिंघासन वो दुल्हे के लिए दुल्हन के लिए --

सामने दो आदमी से कुछ खड़े उधर मुंह करके खड़ा है सामने कुछ बच्चे बैठे दिखा दे रे लड़की भी तेरे लड़के टेबल लगा है नीचे भी छोटा टेबल लगा है उनके ऊपर कुछ बैठी दिखाई दे रही है।

एक बोतल पड़ा दिखाई दे रहा है बियर का सा कुछ पड़ा दिखाई दे रहा है टेबल लगा दिखाई दे रहा है सामने बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है सामने उसके ऊपर कुछ चार्ट जैसा कुछ लगा दिखाई दे रहा है फैन लगा दिखा --

यहां एक तालाब दिखाई दे रही है तालाब दिखाई दे रही बहुत बड़ा सुंदर सा तालाब सा दिखाई दे रहे है दो महिलाएं दिखा दे रही है उनके च उनके सर पे कुछ लगाता है।

शुभ लाभ का वो कुछ ऐसे बड्डे पार्टी का ऊ नाम का कुछ ऐसे कुछ लिखा गया इसमें कुछ सजावट का सामान दिया गया है सजावट का सामान का शॉप है दुकान दिखाई दे रहे है।

वो टी-शर्ट वो कपड़े ऐसा कुछ दिखाई दे रहा लटके हुए दिखाई दे रहा है और कुछ कपड़े शल्ट कुछ रखा गया है ऊपर कुछ फोटो सा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है उसमें कुछ कपड़े पहन कर आदमी दिखाई दे रहा है।

फाइल बनाया गया है कुछ के कपड़े कुछ दि रखे गए कुछ ऊपर कुछ जैसे लगा के सामने क छोड़ के गया है।

यहां ये कुछ थ्री शील्ड का एक छत ति छतरी सी लगाई गई है इसके नीचे आदमी बैठा है ऐसे चेयर डाल के ऐसे कुछ बैठा है ग्रीन कलर का वो --

यह एक फुल सा ऐसा कुछ लगा है फूल जैसी लगी है उसके अंदर कुछ पत्ती जैसी कुछ रखी गई है एक आदमी दिखाई दे रहा है उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है सामने एक चेयर भी लगी दिखाई दे रही है।